और इसे दो व्यक्ति ने पकड़ रखा है काफी भीड़ दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने की साइड दो छोटी छोटी झोपड़ियाँ जैसी दिखाई दे रहे हैं।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

सामने एक अल्टो कार भी जाती दिख रही है।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

बाहर की साइड कुर्सियों पर एक व्यक्ति बैठा है।

और एक और व्यक्ति का हाथ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सामने की साइड कुछ पर्दे टंगे दिखाई दे रहे हैं।

सामने के तबले और कुछ पियानो रखे हैं और भी कुछ लड़के खड़े हैं।

और एक जंगला भी दिखाई दे रहा है।